यहां पे देख सकते है आप लोग जैसा की ये पत्ती वत्ती बना हुआ है और यहाँ पे देख सकते आप लोग ये कुछ पोल पे कुछ टंगा हुआ भी है जोकि बहोत ही अच्छा है।

मूर्ति उर्ती है जैसा की देख सकते आप लोग इधर ये पत्थर वत्थर का बना हुआ है और बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

आप ये देख सकते हैं आप लोग जैसा की यहाँ पेड़ वेड़ लगा हुआ है और इधर पोल वोल भी है और घास वास भी है और बोहत ही बड़ा बड़ा पेड़ है।

और यहाँ घास वास भी है जोकी बोहत हरा भरा ऊपर में तार वार दिख रहा है और उधर ये घास वास बोहत सारे है। बोहत ही बड़ा बड़ा घास है और छोटा छोटा घास --

और उधर ये लंबा सा पुल नज़र आ रहा है जोकि बहुत ही अच्छा है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है ।